अं गार्डन दिख रहा है हरा ग्रीन कलर और सारी मशीन मुझे रेड कलर की दिख रही--

मकान के नीचे मुझे एक पोस्टर लगाए बड़ा हुआ वो ब्लू कलर है।

त मुझे यहां पे लाइट भी दिखाई दे रही हैं यहां पे--

माता रानी को देख रहे हैं कुछ लोग मास्क लगाए हुए खड़े--

तीन बाइक दिख रही है और एक ही स्कूटर है और एक ऑटो खड़ा हुआ है वो ब्लैक और ब्लू कलर का है और एक दुकान के ऊपर --

यहां पर मुझे टमाटर दिख रहे हैं टमाटर में कुछ कुछ निशान--

टेंट से बनी हुईं और ब्लैक कलर की दिख रही है य--

ए_पी रेड कलर की आई_सी येलो कलर की जी ब्लू कलर की लिखी हुई--

कुछ सामान रखा हुआ है। जहां पर और टेबल चेयर है चेयर ब्लैक कलर --

यहां पर मुझे सामान दिखाई दे रहा है जहां कई प्रकार के बिस्किट रखे हैं।